आस पास कुछ लाइट्स लगी हुई हैं।

यहां पर कुछ गमले रखे हुए हैं और यहां पोस्टर लगाए गए हैं।

और दुकान में कुछ आदमी इकट्ठे हुए हैं उनमें से एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पर कुछ चट्टानें हैं और यहां कुछ पहाड़ियां है।

पर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

और दरवाजे पर कुछ पोस्टर लगाए गएं हैं।